पत्थर रखे हुए है यहाँ पर पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है ऐ देखने मे बहुत अच्छा लग रहा है इसके चारों तरफ बहुत सारे पैड-पोधे लगे हुए है।

इस इमेज मे हमे दीपावली के त्योहार जैसा दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहा है देखने मे बहुत अच्छा लग रहा है इस मे माल ले जाते हुए बहुत सारे लोग लाल टी शर्ट मे पहने हुए है समज मे हमे माल दिखाई दे रहा है समज हमे तार दिखाई दे रहे है।